इसके साइड में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत से पंखे लटकाए गए हैं।

इस शोरूम के ऊपर एक बैनर लगाया गया है।

उसके घर के दरवाजे का कलर व्हाइट है।

इसके साइड में एक फोनपे स्कैनर रखा गया है उसके साइड में बहुत सारे पेप्सी और पानी के बोतल से रखे गए हैं जो की ब्लू कलर के हैं।

यह एक मॉल का दृश्य है।

कफो का कलर ब्लैक है।

एक बच्चा मशीन के ऊपर बैठा हुआ है।

बहुत सारे सामान रखे गए हैं जो की प्र एक टैलिंग में रखी गई हैं।

इसके बाहर बहुत सारी कर फॉर्च्यूनर खड़े हैं।

यह एक जिम का दृश्य है।

कुछ पंखे लटकाए गए हैं जिसका कलर व्हाइट है।

यहां पर कुछ वर्कआउट करने के औजार रखे गए हैं।

कुछ प्याज और कुछ आंवले रखे गए हैं।

यह एक बैंक का दृश्य है।

इस रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत सारी लाइटे जली हुई है।

यह एक फूलों के बागान का दृश्य है।

इस बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

घरों के ऊपर एक छपरा लगाया गया है जो कि ब्राउन कलर का है।

यह एक क्रिकेट ग्राउंड का दृश्य है।

और एक खाली मैदान है इसके बीच में स्टांप पड़े हुए हैं जोकि पीले कलर के हैं।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

यहां पर एक आदमी है जो की बाल काट रहा है जिसने ब्लू कलर का शर्ट पहनी हुई है।

इस सैलून में एक लाइट जल रही है एक टीवी दिखाई दे रही है दो मिरर रखे हुए हैं।

एक आदमी नीचे खड़ा है जिसने पीले कलर का शर्ट और पेंट पहनी हुई है।

इस स्विमिंग पुल के साइड में बहुत सारे ट्यूब लगाए गए है।

यह एक रोड का दृश्य है।